इसलिए मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट लोग यहाँ पर कट्टे हुए हैं।

ये हमारे इलाका का एक टूरिस्ट स्पॉट है। ये एक पुराने है।

वगैरह होता है। यहाँ के वर्कर लोगो का काम बहोत ही सुंदर है।

यहाँ पर का लोग इकट्टे होकर ए जनसभा कर रहा हैं।

इस स्कूल में पांचो स्टूडेंट पड़ता है।